इस तस्वीर में मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं--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

यहां मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे--

यहां मुझे खिड़कियां दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बैंक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।